जो कि बहोत ही अच्छे से दिखाई दे रही है चारों साइड --

ये बोहोत ही अच्छा व्यू दे रहा है यहां पास स्टेज में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां व सामने तीन चार बड़े मुर्गे दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने एक रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है।

कंपनी के पास है जैसे कि तिवारी बसेस द्विवेदी बसेस ।

और बहोत सारे अलग अलग प्रकार के कैमिकल भी--